मुझे एक गेट दिख रहा है इस गेट पर अ शटर लगा हुआ है ये शटर आधा खुला हुआ है यहाँ मुझे एक बाइक दिखाई --